शिंगार इस्टोर में चारो तरफ से सीसा लगा हुआ है और हर अलमारी में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

उसके सामने में बहुत सारे बाइक बहुत सारे मोटर साइकिल और साइकिल भी हैं ।

सामने में गोल चक्र बनाके प्लस का चिन्ह दे दिया गया है और एक टेबुल भी रखा गया है।

और हरे हरे घासो से कुछ लिखा हुआ भी है।

घासों से कुछ डिजाइन भी बने हुए हैं और वहां पर एक पुराना सा घर भी दिख रहा है उस घर में सीढ़ी भी लगे हुए हैं।

उस मंदिर में बहुत सारे लड़की और आदमी और औरत भी जा रहे--

एक पार्लर में एक दुल्हन को सजाया जा रहा है वो गजरे पहनी हुई है उस गजरे में गुलाब का फूल भी लगा हुआ है।

एक होटल में पार्टी हो रहा है उस होटल में बहुत सारे बल्ब भी लगे हुए हैं।

आ ऊपर से लाइट भी आ रहा है उस जगह पर एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ भी है।

वहां पर प्लास्टिक का कवर किया हुआ सामान भी रखा हुआ है और टेबल के ऊपर में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

इस जगह पर एक सीढ़ी से बना हुआ एक पुल दिख रहा है उस पुल के बगल में बहुत सारे खंभे दिख रहे हैं।

दुकान में कुछ एयरटेल भी लिखा हुआ है।

और वहां पर एक टेबुल में प्लास्टिक का कभर लगा दिया गया है।

नीचे का जमीन भी टाइल्स से बना हुआ है और उस रूम में बहुत सारे कुर्सी रखे हुए हैं।

पेड़ भी दिख रहा है पीछे में एक बाइक दिख रहा है।

एक बहुत बरा सा बिल्डिंग दिख रहा है उस बिल्डिंग में बहुत सारे खिड़कियां लगे हुए है।

इस होटल में चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है।

बहुत सारे लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं एक लड़की के पीछे में एक तकिया भी रखा हुआ है।

उस पेट्रोल पंप के सामने में दो आदमी खड़ा है और उस पेट्रोल पंप में एक ऑटो भी खड़ा है उस ऑटो में लाइट भी जल रहा है।

इस होटल में एक छोटा सा मंदिर भी दिख रहा है।

एक बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा है वह मंदिर बहुत ही पुराना लग रहा है।

ये सुनसान सा रोड भी दिख रहा है वहां से बहुत दूर में एक गाड़ी भी दिख रहा है।

उसके बगल में भी कुछ घर दिख रहे हैं उस घर में पर्दा लगा हुआ है वहां पर कुर्सी भी दिख रहा है।

और कुछ बॉस के खूंटे भी गड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।